ये तो लग रही राधे कृष्ण भगवान हैं इसका भी पूजा आरती हो रही।

ये बस स्टैंड है ये मेरी सहरसा डिस्ट्रिक्ट की नहीं है ये कहीं और जगह की है पर देखने में बहुत अच्छी लाग रही है यहाँ पे बहुत ढेर सारी गाड़ी हैं आदमी भी है।

यहाँ पे कोई देवी मंदिर है यहाँ पे देवी-देवता का निवास होते है यहाँ पे ढेर सारे झंडा लगे हुए है यहाँ पे कमरा भी बहुत है।